यहाँ पे एक क्लास है उसमे बहोत सारे टेबल रखे हुए हैं टेबल में एक जगह संतरे कलर के कपडे झूल रहा है टेबल सफ़ेद रंग की हैं बहार में उनमे एंगल काले रंग के हैं जो टाइल्स लगी हुई है।